एक वॉल पर बहोत सारे पेंस रखे गए हैं।

चित्र में एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है।

इस चित्र में एक दुकान नजर आ रही है जिसके अंदर किचन से रिलेटेड कुछ सामान रखा गया है।

इस चित्र में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट नजर आ रहा है।

डेकोरेशन के लिए चारों तरफ कलरफूल लाइट और कुछ एल ई डी बल्ब्स लगाए गए हैं।

पेट्रोल पंप के बाहर एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है।

दो व्यक्ति खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

और कुछ एक्टिवा खड़ी हुई नजर आ रही है।

सामने कुछ बड़ी बड़ी मशीने कारखाने में दिख रही हैं।

जो कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं सामने एक पादरी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

पुल के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिख रहा है।